अंशुल गुप्ता और डॉक्टर निकिता गुप्ता है इसमें दांत और स्किन का दिखा रोग का वो डॉक्टर है इसमें एक बोर्ड भी लगा हुआ है शायद उन डॉक्टर का नंबर भी दिया हुआ है।

और साइड में उधर फूल वगैरह कुछ लगा हुआ शीशा लगा हुआ है पीछे और पीछे कुछ दीवार पे कुछ तस्वीरें लगी हुई है।

फोटो दिखाई दे रहा है एक चेयर भी दिखाई दे रहा कुछ फूल फूल उसमे रखे हुए हैं पीछे शिव जी का त्रिशूल और शिव जी का दिखाया गया शिव जी का चेहरा साफ नही दिख रहा है।

एक पेड़ दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है उसके नीचे सीढ़ियां कुछ चेयर्स कुछ लगी हुई है।

एक गेट लगा हुआ है गेट के अंदर कुछ बिल्डिंग में दिखा दे रही साइड में कुछ ए_सी का वो दिखा दे रहे ए_सी लगा हुआ अंदर में गेट में अंदर जाने का रास्ता भी है।

पीछे कुछ दिखाई दे रहा उधर पीछे में एक आदमी गाड़ी के पीछे मे एक आदमी खड़ा है उसका चेहरा सा दिखाई से रहा है लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा है।

ये एक फर्श दिखाई दे रहा है उसमें सभी टाइल लगी हुई है एकदम फर्श से एकदम साफ दिखाई दे रहा है साइड में एक कलर इधर भी लगाए कलर नीचे भी --

पिनचरिंग पिंचर की कुछ दुखाई दे रहे है दुकान दिखाई दे रही है भट्टी ओंठो की--

इधर एक नेट का जाली दिखाई दे रहा हैं पॉल बांधकर नेट की जाली के कुछ लगा हुआ हैं नीचे उधर पीछे से पानी बह रहा है पानी --

एक दृश्य कोट पहनके कोट पैंट पहन के इधर पीछे से बच्चा भी खड़ा है कुछ ऐसे --

कुर्सी वगैरा इससे कुछ सामान पड़ा हुआ है बाइक का बाइक का कुछ शोरूम कुछ होगा बाइक का समान पड़ा बहुत बड़ा हीरो का होंडा का एक होंडा का बोर्ड भी लगा हुआ है।

एक शॉप दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा शॉप दिखाई दे रहा है उसमें अंदर कोका कोला का वो ड्रिंक को एक आदमी खड़ा एक बच्चा कुछ लेने के लिए उधर खड़ा है।

और इधर में इसमें कुछ कॉफ़ी की और सब वगैरह मिलता है कोका कोला और यह बच्चा कुछ लेने के लिए इधर खड़ा है बच्चे को सिर पर टोपी लगाए हुए इधर एक आदमी है वो कुछ --

ये कुछ शॉप ऐसा वेगैरा कुछ दिखाई दे रहा हैं। कैंटीन वगैरा ऐसा शॉप कुछ दिखाई दे रहा है।